ये एक किला ये एक किला टाइप दिख रहा है और अ इसके ऊपर छोटा-सा वो दिख रहा है मीनारे टाइप दिख रहा है।

ये एक घर टाइप अ-दिख रहा है ये सफेद कलर का इस पर पुट्टी की हुई है और एक तरफ ईटो की वाल दिख रही है रिनिया जीने-जीना दिखाई दे रहा है ।

यहाँ पे कुछ लगा लगा हुआ है जिस पर कुछ मूर्तियों के चहरे बने हुए है।